यहाँ पे बहोत ही अच्छे से गाड़ियों को ठीक किया जाता है यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे मिकैनिक होते है।

बहुत दूर-दूर से भी लोग यहाँ पे आते है वीकेंड के दिन मूवी देखने के लिए और यहाँ पे नई-नई मूवीया --